और बहुत ही ज्यादा खूब सूरत तरीके से इसकी डेकोरेशन की गयी है।

इस दृश्य में हमें बंधन बैंक का लोगो दिखाई दे रहा है। और पब्लिक दिखाई दे रही है।

और बर्फ भी दिखाई दे रहा है और बहोत से पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

और सामने बिल्डिंग्स वगैरह भी दिखाई दे रही है जो स्केटिंग करते हुए बहुत से कपल दिखाई दे --

बाकी व्यक्तियों ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और वाइट कलर की पैंट --

और उसी के पास फोटो शूट होने की कुछ सामान भी दिखाई दे रहे है।

इस दृश्य मे हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिस रेस्टोरेंट के में बहुत से टेबलस और चेयर भी दिखाई दे रहे--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

इस दृश्य में हमे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य मे माइनिंग होती हुई दिखाई दे रही है।

जहां पे पहाड़ के नीचे एक जे_सी_बी दिखाई दे रही है।

हमें इस दृश्य में दो ऑटो दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक एग्जिट पॉइंट दिखाई दे रहा है जो एक वेडिंग हॉल का है।

और वहां पे एक टेबल है जिस टेबल के ऊपर खाने पीने की बहुत सि चीजें राखी हुई--

जिसका कलर ब्लू और रेड है और वहां पर एक आदमी कुछ करते हुए दिखाई--

यहां से हाथी निकलते हुए दिखाई दे रहे--

इस दृश्य में दो प्लास्टिक के चेयर भी दिखाई रहे हैं।